हमें किसी पैलेस की लग रहीं हैं।

यह दृश्य हमें किसी फैक्ट्री का दिखाया जा रहा है।

इसमें हमें बहुत सारे वर्कर्स नजर आ रहे हैं।

फोर जी लिखा हुआ दिखाई--

देखने से यह हमें किसी--

इस दृश्य में हमें एक सड़क दिखाई दे रही है।

हमें बहोत सारी वृक्षों भी दिख रहीं हैं।